एक काउंटर बना है काफी सारे बोरे और सब्जियां रखी हुई हैं।

काउंटर पर सामान रखा है ।

एक मूर्ति रखी हुई है।

काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

एक एक्टिवा नज़र आ रही है।

इस चित्र में हमेंतीन मोहरेदिखाई दे रही हैं।

एक आदमी खड़ा हुआ है।

केलों के पत्तों से सजाया गया है।

एक आदमी बैठा हुआ है।

एक का रंग जामुनी है।

तीन औरतेंदिखाई दे रही हैं।

एक औरत ने गुलाबी साड़ीपहनी है।

एक बड़ा सा शिप नजर आ रहा है।

काफी सारी मछलियां नजर आ रही हैं।

ये पूरी टिन की बनी है।

इस चित्र में हमें एक कॉलेज दिखाई दे रहा है।

पेड़ों का रंग हरा है आसमान मेंबादलदिख रहे हैं।

आसमान मे बादल नजर आ रहे हैं।

मंदिर लिखा हुआ है।

काफी सारे लोगदिखाई दे रहे हैं ।

इस चित्र में हमें एक कैफे दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक स्टेज दिखाई दे रहा है।

इस चित्र मे हमे कुछ मंदिर नजर आ रहे है।